नीचे मुझे ब्लैक एंड वाइट फर्श दिखाई है ऊपर के साइड मुझे पंखा दिखाई दे रहा है जिसका कलर सफेद हैं |

इस पिक्चर में मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे है पीछे के साइड मुझे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है जो की ग्रीन कलर के है।

और साइड में ही मुझे ब्राइटनेस कलर के खम्भे दिखाई दे रहै है।

इसमें मुझे दो गाड़ियां दिखाई दे रही है एक का कलर सफ़ेद है और एक का कलर ग्रीन है।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

बिल्डिंग के पीछे मुझे पेड़ दिखाई दे रही जो ग्रीन कलर के है।

चेयर दिखाई दे रही है जो की वाइट कलर की है और इसमें काफी सारे पलांग्स भी मुझे शो हो रही है --

इनमे ग्रीन-कलर के छोटे छोटे आ बांसे पीछे के साइड मुझे बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है और बिच में ही एक खंम्भा दिखाई दे रहा है।